तरह तरह के डिजाइनर सोफे भी रखे हुए हैं फर्नीचर --

मैं देख पा रही हूं। यहां एक छोटा छोटा पौधा है जो टमाटर के पौधे की तरह दिख रहा है ये पौ--

यहां किसी समान का शॉप है जो डब्बे प्लास्टिक और कुछ छोटे-छोटे बॉटल में --

मैं देख पा रही हूं यह कहीं का मार्केट है यहां--

और उसके अगल बगल घर और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं काफी अच्छे दिख रहे हैं लोग--

बीच में एक सोफा भी रखा गया है जो वाइट कलर का है चारों तरफ लाइट लगी--